इस फोटो में हमें कुछ घास दिखाई दे रहा है जोकि ग्रीन कलर का है।

घास लगी हुई हैं और यहाँ पर पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहें हैं जो की व्हाइट ब्लैक कलर के हैं।

दिख रहा है साथ मे जंगल दिख रहा है।

साथ में ही एक व्यक्ति बर्फ के मैदान में दिखाई दे रहा है और यहां--

पत्थर की दीवार के साथ रास्ता बना हुआ--

व्हाइट कलर की दीवारें भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ शॉप्स में व्हाइट लाइट है लाइट के सामने ही लोग खड़े हुए है।

कुछ बिल्डिंग व्हाइट कलर की दिखाई दे रही--

साथ ही इसमें ब्लैक कलर के ग्लास लगे हुए--

इस फोटो मे हमें एक फ्यूल स्टेशन दिख रहा है जहां पर ऑटो खड़े है।

और पीछे की तरफ हमें झाड़ियां से लदा हुआ जंगल दिख रहा है जो कि यहां पर कुछ झाड़ियां ब्राउन कलर की और कुछ पत्ते यहां पर ग्रीन --

रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं सामने ही एक बॉक्स बना हुआ है।